सामने जिम दिखाई दे रही है।

जिसने हरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

आसमान ब्लू दिखाई दे रहा है पेड़ हरा--

ऊपर लाइट जलते हुए दिखाई दे रही है पीछे कुर्सी टेबल है।